फैमिली दिख रही है लोग दिख रहे है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है।

बहुत सारी रोडे दिख रही हैं लगी हुई ।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ी मस्जिद दिख रही है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा रास्ता दिख रहा है।

रात में और बहुत सारी लाइटिंग दिख रही है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा सा--

पेड़ दिख रहा है बिल्डिंगें दिख रही हैं।

एक जग दिख रहा है एक गिलास दिख रहा है।

जिसमें बहोत सारी पेंटिंगें लगी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा रास्ता दिख रहा है।

क बहुत बड़ी सी दुकान दिख रही है जिसमें बहुत सारा सामान जमा हुआ हैं।

कैमरा दिख रहा है ऊपर छत दिख रही हैं।

रोड दिख रहा है आसमान दिख रहा है बहुत बड़ी सी एक रेलिंग दिख रही हैं।

बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है जिसके नीचे से लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी सी रेलिंग दिख रही है जोकि फिरोजी कलर की पुती हुई है।

जिसमें डीजे रखे हुए है बहुत सारे लड़कीये लड़के--

शायद डांस कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं।

कुर्सी दिख रही है बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं।

एक बोर्ड दिख रहा है जिस पे ए टू जेड अमूल लिखा हुआ हैं।

और बहोत सारे व्हाइट कलर के शटर लगे हुए है सामने रास्ता दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो कि क्रीम और लाल कलर की पुती हुई हैं।